यहाँ आस-पास कुछ छोटी-छोटी दुकानें भी हैं।

इसके आस-पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं देखने में लग रहा है कि आस-पास बड़े-बड़े कॉलेज भी हैं यह बहुत ही सुंदर लग रहा है।

जिसमें से बड़े -बड़े पत्थर कट के निकले हुए हैं। उन पत्थरों के नीचे दो आदमी हैं जो बाहर देखते हुए नजर आ रहे हैं।